फोटो में दो कुर्सी नजर आ रहे हैं कुर्सी पर पानी का जार रखा हुआ दिख रहा है।

यह फोटो एक मॉल की है जिसमें एक सीढ़ी दिख रही है सीढी का कलर ब्लैक है।

और नीचे ग्रीन कलर का मैट बिछे हुए दिख रहे हैं।

बगल मे एक सीढ़ी है जो छत के ऊपर गया है।

यह फोटो में टाइल्स नजर आ रहे हैं और टाइल्स का कलर ब्लैक है।

उसके बगल में भी बहुत सारे अह देवता दिख रहे हैं जिसमें गणेश जी हैं।

यह तस्वीर एक पार्क का है जिसमें जाली लगा हुआ दिख रहा है बॉर्डर में और अंदर बहुत सारे हिरण नजर आ रहे हैं।

और हिरण के बड़े बड़े सिंग भी हैं।

रूम का गेट का कलर ग्रीन है और अंदर बेड बेड सोफा लगे हुए दिख रहे हैं और रैक भी है और दो खिड़की नजर आ रही है।

जूता का कलर व्हाइट है और चश्मा भी पहना हुआ दिख रहा है।